और बीचो बीच में एक आदमी खड़ा हैं इने मेन के गेट के पास--

चार बाइक तीन बाइक खड़ी हैं अ रोड पे और एक साइकिल खड़ी हैं ।

तड में खड़ा हैं ब्लू कलर की जीन्स पहनी हैं उसने और पीछे साइड और भी पेड़ हैं अ--

गजरा दिख रहे हैं नीचे साइड छोटी छोटी घास मिटटी वगेरा हैं ।

और कुछ लेडीज और गेंट्स वगेरा भी वाक कर रहे हैं मतलब कही जा रहे हैं बाजू में एक बड़ा सा--

पेड़ हैं पेड़ के नीचे बहुत सारे बाइक और स्कूटी खड़ी हैं साइकिल खड़ी हैं ।

ये एक गेंट्स सैलून हैं अ आमने दो रेड कलर की चेयर रखे हुए हैं।

और ऊपर साइड ब्लू कलर के गेट पर डिजाईन किया हुआ हैं अ बाजु में एक छोटा सा येल्लो कलर का वाल दिख रहा हैं ।

और पांच छह लकड़ी के खम्बे लगे हुए हैं ।

सामने भी कंप्यूटर वगेरा रखे हैं टेबल पे और यहाँ टेबल के सामने कंप्यूटर माउस दिख रहा हैं एक कीबोर्ड दिख रहा हैं पेन पेपर हैं और एक स्टेप्लर --

और पीछे साइड एक म बड़ा सा घर दिख रहा हैं एक बहुत सारे बैनर लगे हुए हैं ।

खड़े हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं तीन अ ग्रे कलर ग्रीन कलर की टी-शर्ट में हैं तीन वाइट कलर की टी-शर्ट में है और एक आदमी बैठा है।

सामने अ चार कार हैं दो वाइट हैं और एक ब्लैक कलर और एक रेड कलर की कार हैं ।

यहाँ रोड में अ दो रिक्शा दिख रहे हैं एक बाइक खड़ी हैं ।

रिपा कलर मंदिर संस्कृति हैं और पीछे साइड एक बड़ी सी कंपनी दिख रही हैं ।

हाथ में मशीन लेके लेडीज का बैग चेक कर रहा हैं और ये कांटेक नम्बर ऊपर बड़ा सा इस बैनर बना हुआ हैं और--

अ गड्डे में पानी भर गया गड्डे जैसा पानी हैं और रोड में तीन ऑटो दिख रहे हैं दो तीन बाइक दिख रही हैं कुछ पब्लिक छे रहे --

टेबल में पांच छह डीश रखे हुए हैं उपर लाइट जल रही हैं अ साइड साइड में विंडो के पास ब्राउन कलर के परदे लगे हुए हैं ।

ऊपर एक फैन दिख रहा है वॉल पे लगा हुआ है और एक ए_सी दिख रहा है।

और दो लोग कुछ खा रहे हैं और एक मोबाइल में कुछ देख रहा हैं वाइट कलर की रेड कलर की चेयर --